इसमें टायर और ये सब बहुत अच्छे दिखाई दे रहे है और इसका हैडल भी बहुत अच्छा दिख रहा है बहोत तरिके से डिज़ाइन नवा नवा है।